इस दूकान के मालिक का नाम संजय चंद्रवंशी है ।

यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक सैलून को दिखाया गया है। जिसका नाम ऐ वन ऍन.जी.बी. पार्लर है। यहाँ पर बोहोत डिज़ाइन डिज़ाइन के बाल काटा जाता है।

इस तस्वीर में एक बस अड्डे को दिखाया गया है यह बस अड्डा एक छोटा सा बस अड्डा है जहाँ पर तीन चार बस खड़ी हुई है।

यहाँ पर हम एक साइकिल की नई दुकान को देख सकते हैं यहाँ पर बहोत सारी नई-नई साइकिलें हैं।

और यहाँ पर तीन श्रमिक काम कर रहें हैं जो कि ट्रक में बोरी सब लोड कर रहे हैं।